और यहां पे घर का कलर हल्का ब्लू और हल्का ग्रीन और ऑरेंज और एक करकट ऊपर दिख रहा--

और बहुत सारे यहां पर चेयर्स और टेबुल जो चेयर के कलर व्हाइट एंड ब्लू और टेबल का कलर है रेड एंड व्हाइट ।

यह एक मूर्ति का दृश्य है जो कि यहां पे कई सारे मूर्ति रखें है कई प्रकार प्रकार के कई तरह के मूर्ति है जो कि कई व्यक्ति यहां पे घूम रहे हैं।

यह एक मंदिर का दृश्य है जोकि काफी लंबा और काफी चौड़ा है और मंदिर का कलर व्हाइट गोल्डन और बाहर की साइड पोल --

जोकि छोटे से लेकर बड़े तक पाए जाते हैं एक लड़का खड़ा है जोकि ब्लू और हल्का रेड में पैंट और शर्ट पहना हवे है।

और इसका सिर का बाल का कलर है ब्लैक और यहां पे छोटे छोटे व्हाइट कलर के पत्थर बिछे हुए है जो कि व्हाइट कलर का और उसी का ऊपर घास जमे हुए जो कि ग्रीन कलर का--

यह एक व्यक्ति का दृश्य है जोकि सामान ले रहे हैं जोकि व्यक्ति की टी शर्ट का कलर येलो एंड सिर पर कुछ बांधे है जोकि हल्का ग्रे कलर का है।

यह एक महज़िद का दृश्य है जोकि बहुत ही लंबा और बहुत ही चौड़ा जोकि महज़िद का कलर है ब्लैक एंड यलो।

यह एक सोलर का ड्रेस है जो कि यहां पे बहुत सारे सोलर रखे हैं और सोलर का कलर है ब्लैक एंड व्हाइट।

और भी कई प्रकार के छोटे बड़े पेड़ पौधे हैं जो कि गमले में रखे हैं जो कि बहुत छोटे छोटे और बहुत सारे यहां घर हैं जो कि घर छोटी लगे हुवे हैं।

और ऊपर की साइड उसी का शीशा है जो कि व्हाइट कलर का और ऊपर लाइट चमक रहा है।

और एक बाइक है नीचे के साइड और उसी का बगल में छोटा सा घर है ।

जोकि सब मछली मरे हैं और कुछ मछली का गर्दन कटा हुआ है कुछ का सिर कटा है और कुछ का बन रहा है।

और यहाँ पर एक हेलमेट है जोकि ब्लैक कलर है और नीचे की साइड टाइल्स मार्बल का है और एक व्यक्ति है जोकि गमछा पहना है वाइट कलर का।

और जो डी_जे का कलर है जो ब्लैक और राजु लिखा है येलो कलर का और भी कई चीज लिखे नीचे येलो कलर --

और ऊपर की साइड एक और लाइट है जो वाइट कलर का और सामने एक साइड एक घड़ी है।

और कहीं यहां पे झंडे लगे हुए हैं जो की झंडे के कलर है ऑरेंज एंड येलो और भी एक प्रकार के कलर और छोटे मोटे बहुत सारे यहां पर पेड़ पाए जाते हैं।

यह एक पटरी का दृश्य है जो की पटरी का कलर हैं ब्राऊन और यहा पे बहुत सारे गिट्टी है जो की गिट्टी का कलर है ब्लैक और भी कई कलर है।

और उसी का बाहर साइड एक घर है जो कि घर का कलर हैं हल्का क्रीम येलो एंड रेड ।

यह एक गार्डन का दृश्य जो कि यहां पर बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ पौधे है जो कि पेड़ पौधे का कलर है ग्रीन --

और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे खिड़की है और भी कई प्रकार के उसमें कलर है जो की रेड और यहां पे बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ भी जो की पेड़ का कलर है ग्रीन एंड ब्राउन ।

एक मैदान का दृश्य है जोकि यहाँ पे कई फूल छोटे बड़े लगे हैं। जोकि फूल का कलर है पिंक एंड व्हाइ--

और एक खिड़की पर लोहा का लगा हुआ है जो बना हुआ और लाभ लिखा हुआ है लाल कलर का और दीवाल का कलर है व्हाइट ।

और ऊपर के साइड बल्ब जल रहा वाइट कलर का और अंदर के साइड ओ लाल कलर का आइसक्रीम छापा हुआ।